जैसे की छोटी सी करियाना की दुकान--

यहां पर लोग बाइको को पर इंतजार कर रहे है।

यह एक एकांत जगह का दृश्य है जहां पर हम बैडमिंटन भी खेल सकते हैं।

फंक्शन का सीन लग रहा है।

और और झरना बह रहा है फाउंटेन ।

यह पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने है।

मजा आता है बहुत ही ज्यादा यहां पे भीड़ है लोग यहां अलग अलग तरह की मछलियां लेने आए हैं।

यह एक चंडीगढ़ के पार्क का सीन है यहां पर--